नमस्कार दोस्तों
वेब एप्लिकेशन में एक applet एप्लेट इंटीग्रेट एकीकरण करना करने पर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
application जिसे आप इस tutorial में बनाते हैं वह आपको दर्शाएगा कि netbeans ide में एप्लेट को कैसे बनाएँ औऱ परिसारित करें
यदि आप netbeans का उपयोग पहली बार कर रहे हैं तो कृपया निम्न tutorial देखें
introduction to netbeans to get started with the ide
इसके अतिरिक्त ide के साथ सुपरिचित होने के लिए netbeans ide पर developing web applications और
designing guis ट्यूटोरियल्स भी देखें
उपर्युक्त सभी tutorials को spoken tutorial की website पर देखा जा सकता है
इस प्रदर्शन के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ लिनक्स operating system ऊबुंटू 1104 और netbeans ide 711
इस tutorial में हम एक
applet बनायेंगे
applet को run करेंगे और
web application में applet को शामिल करेंगे
अब अपने project को बनाने के लिए ide launch करते हैं
file> new project पर जाएँ और java class library बनाएँ
next पर click करें
अपने project को name दें
मैं अपने project को sampleapplet name दूँगी
अपने system में किसी भी directory में स्थान set करें
और अपना project बनाने के लिए finish पर click करें
अब applet source file बनाते हैं
sampleapplet project node पर right click करें
और प्रोप्रटीज window खोलने के लिए properties चुनें
project के लिए इच्छित source and binary format का चयन करें
यह सुनिश्चित करने के लिए है यदि jdk का सही version चुना गया है
उदाहरण के लिए यदि आपने jdk का नया मॉडल चुना है
फिर applet उन मशीनों पर नहीं चल सकता है जिनमें java browser प्लगइन plugin का पुराना version है
मैं jdk का नया version चुनूँगी क्योंकि मेरा browser java browser प्लगइन के नये version का समर्थन करता है
ok पर click करें
sampleapplet project node पर फिर से click करें
और new> applet चुनें
यदि आपको इस contextual menu में applet option नहीं मिल रहा है other पर click करें
categories के अंदर java चुनें
file types के अंदर एक applet बनाने के लिए applet चुनें
class name sample और package name org me hello दें
finish पर click करें
ide निर्दिष्ट package में applet source file बनाता है
आप इसे देखने के लिए projects window में source package node विस्तृत कर सकते हैं
applet source file source editor में खुलती है
अब अपने applet class को परिभाषित करते हैं
मेरे पास साधारण applet के लिए code है
जो background color cyan
foreground color red red करता है
और message प्रदर्शित करता है जो क्रम को स्पष्ट करता है जिसमें applet में methods हैं
अर्थात init method start methods और paint methods कॉल होते हैं जब applet शुरू होता है
मैं अपने clipboard में पूरे code को copy करुँगी और ide में मौजूद code में paste करूँगी
projects window में sample java file पर right click करें
और contextual menu से run file चुनें
applet सन्निहित के साथ sample html launcher फ़ाइल build folder में बनती है
आप files window में देख सकते हैं
sample dot html file
applet applet viewer में भी लॉंच होता है
screen पर message प्रदर्शन के साथ
मैं appletviewer को बंद करती हूँ
और फिर web application में applet को लागू करते हैं
ताकि हम यूजर के लिए applet उपलब्ध करा सकें
ऐसा करने के लिए हम एक web application बनाते हैं
categories के अंदर java web चुनें और projects के अंदर web application चुनें
और next पर click करें
हम अपने project को hellosampleapplet name देंगे और
next पर click करें
देखें यदि see server चयनित है और अपने project को बनाने के लिए finish पर click करें
ध्यान दें जब हम java project sampleapplet को web project hellosampleapplet में जोड़ते हैं
हम applet के निर्माण के लिए ide सक्षम करते हैं जब भी हम इस web application का निर्माण करते हैं
इसलिए जब हम sample dot java applet संशोधित करते हैं
ide applet का एक नया version बनाता है जब यह बन जाता है
अब projects window में hellosampleapplet projects node पर right click करें
और properties पर click करें
हमारा applet java project में है
jar file को जोड़ने के लिए window की बाईं ओर पर menu से packaging option चुनें
add project पर click करें और java project चुनें जिसमें applet class शामिल है
इस case में यह sampleapplet है
add project jar files पर click करें
jar file applet source file सहित अब table में सूचीबद्ध है
ok पर click करें
projects window में इस पर right क्लिक करके और clean and build ऑप्शन्स को चुन कर
अब hellosampleapplet प्रोजेक्ट बनाएँ
जब यह project now जाता है तो applets jar file मूल sampleapplet project में तैयार होती है
files window पर जाएँ build और web फोल्डर के अंदर
hellosampleapplet प्रोजेक्ट नोड प्रदर्शित करें
आप देख सकते हैं कि jar file जुड़ गई है
अब आगे applet को html file में जोड़ें
project window पर वापस जाएँ hellosampleapplet projects node पर right click करें
new चुनें और html file option चुनें
यदि आप इस contextual menu में html option नहीं पा सकते हैं
other पर click करें
categories में web चुनें और file types में html चुनें और next पर click करें
अपनी html file को name दें
मैं फाइल को myapplet name दूँगी और finish पर click करें
अगला step है myapplet dot html file में body tags के बीच में applet tag प्रविष्ट करना
मेरे पास यहाँ applet code है
मैं इसे मेरे clipboard से copy करती हूँ और html file में body tags के बीच में paste करती हूँ
अगला step है html file को रन करना
projects window में myapplet dot html पर right click करें और run file चुनें
server html file को ide default browser में deploys करता है
अब जैसे ही server html file को ide default browser में deployed करता है
आप screen पर प्रदर्शित message देख सकते हैं
अब नियतकार्य
अपने नियतकार्य के रूप में ide में दूसरा साधारण banner applet बनाएँ
जिसमें applet appletविंडो पर message scrolls करे
अपने applet को web application में जोडें
और web project में jar files जोड़ें और
अंततः html file बनाएँ और रन करें
मैंने मेरा घूमने वाला बैनरapplet बना लिया है
मैं project खोलती हूँ और रन करती हूँ
आप देख सकते हैं कि applet window पर message स्क्रोल करने के साथ खुलता है
screen पर प्रदर्शित link पर उपलब्ध video देखें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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद